और डेकोरेशन अति सुन्दर बनाया गया हैं।

ये कोई झरना सा लग रहा हैयहा पे जरना बहुत ही तेजी से पानी आ रहा हैयहा पे|

ओर ये सुंदर लग रहा है और ये ऑरेंज कलर का बीच में पट्टी भी मारा है बहुत ही सुंदर लग रहा है।

लगता है यहां पे पारे वाला पेड़ भी कुछ नजर आ रहे है लगता है ये कोई पूजा स्थल होगा।

यहां से एक बस स्टैंड होगा शायद।

तभी फोटोग्राफर नही है